और भी टी टीचर भी गाइड कर रहे हैं और यहाँ पे यह देख सकते हैं कि बहुत सारे लड़कियाँ रगोंली बना रही हैं जो देखने में काफी सुन्दर लग रही है। यहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ --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

ठीक है। यहाँ पे तरह-तरह की डिजाइनिंग आकर लोग करवाते हैं। आप भी यहाँ आके अपनी मनपसंद डिजाइनिंग --

बहोत जगह कैंप लगया गया है। यह कैंप लगाने से लोगों को बहोत ही सुविधाएं होती हैं। लोगो को बहोत सारी जानकारियां भी --

आप यहाँ पे एक बहोत बड़ा एक नदी देख सकते हैं। नदी के किनारे बहोत बड़ा एक पहाड़ भी है। और इस पहाड़ के साथ-साथ आसमान भी बहोत सुन्दर दिख रहा है।

मनपसिंदा कॉस कर सकते हैं। आपको जो भी कॉस करना हो आप आप ईजिली वे में कर सकते हैं। आप यहाँ आओ। आके जितने भी कंप्यूटर के नॉलेज हो आप यहाँ से ले स --